अ यह देह सुंदरी मेमोरियल महाविद्यालय झाझा का है।

यह कोई अ पुराना ऑफिस है।

ये बहुत पुराना बिल्डिंग है इसका मरम्मत भी नहीं किया जाता है।

जो आस-पास वृक्ष है उसमें जो लत है वो बहुत ही खूबसूरत है कुछ लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं यहाँ स्नान करना बहुत मजा आता है।

और बहुत सारे भेड़ यहाँ पे बैठे हुए हैं।

बल्ब बहुत रास्ते का कोई दिखाई दे जहाँ पे बहुत सारा चीज़ से आवाज आ रहा है और रखा है और ये बहुत सारा कुछ कुछ खुला हुआ रहते हैं।

और ये सभी कलर के अलग-अलग राखी को धागा में बांध के लटकाया हुआ है।

अच्छा सा सजा हुआ है जैसे लग रहा है की ओपनिंग ही हो रहा है।

और बिल्डिंग में आ के फोटो खींचा गया इसलिए यह फोटो --